libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे
एक डिज़ाइन view का इस्तेमाल करके एक query बनाएँ
query डिज़ाइन window में tables जोड़ें
fields चुनें
इसके लिए अपनी परिचित उदाहरण library database को लेते हैं
library database में हमने पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
और साथ ही हमारे पास स्स्दस्यों को जारी की हुई पुस्तकों को पता लगाने के लिए एक table है
अब सदस्यों को जारी की हुई सभी पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए हम एक now query बनाएँगे
दूसरे शब्दों में चलिए पुस्तकों का एक विवरण बनाते हैं जो सदस्यों को जारी की गयी हैं
चलिए library database खोलते हैं
बाएं panel पर queries icon पर click करते हैं
दायें panel पर हम create query in design view पर click करेंगे हम अब एक नई window देखते हैं जिसे query डिज़ाइन window भी कहते हैं
और साथ ही हम उपर एक छोटा पॉपअप window देखते हैं जो कहता है add table or query
यह वह है जहाँ हम query के लिए data स्रोत निर्धारित करेंगे
और हमें सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों के विवरण की query बनाने के लिए सभी तीनों tables की आवश्यकता होगी
हम यह सूची में books table पर क्लिक करके कर सकते हैं और फिर पॉपअप window की दायीं तरफ add button पर क्लिक करते हैं
इसी तरह से हम booksissued table और members table जोड़ेंगे
अब हम देख सकते हैं कि तीन query पीछे की query डिज़ाइन window में दिखाई we रही हैं
चलिए अब पॉपअप window को बंद करते हैं
यह query डिज़ाइन window को आगे लाएगा
ध्यान दीजिये कि तीन tables window के आधे उपरी भाग में हैं
यहाँ चलिए tables के बीच में कुछ जगह बनाते हैं
चलिए members table को दायीं तरफ click करके drag और drop करते हैं
और फिर booksissued table को बीच में click drag और drop करते हैं
अब हम इन tables को जोडती हुई lines देखते हैं और यह वह सम्बन्ध है जिसे हमने पहले बनाया था
हम सम्बन्ध की जानकारी देखने के लिए lines पर double click कर सकते हैं
अभी के लिए query window का निचला आधा हिस्सा देखते हैं
इस क्षेत्र के पास cells की कई सारी rows हैं जैसे हम query बनायेंगे हम इसे भर देंगे
सबसे पहले हम field column देखेंगे
यह उन fields का विवरण देने के लिए जिन्हें हम उत्तर के set में दर्शाना चाहते हैं
यह करने के लिए पहले हम window के upper आधे भाग में books table में title field में double click करेंगे
अगला members table में name field
और फिर booksissued table में issue date field
अगला return date actual return date
window के निचले आधे भाग में पहली row में इन fields पर ध्यान दीजिये
साथ ही तीसरी row में समरूपी table के names
अगला दूसरी row में alias को देखते हैं
यह वह है जहाँ names चुनित fields के लिए विवरणात्मक names दे सकते हैं
अतः जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा aliases में type करते हैं
और aliases हमने कर लिया
अगला हम sort row को देखते हैं
हम उत्तर के set का क्रम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं
चूँकि हमें जारी की हुई पुस्तकों का विवरण चाहिए हम इसे तिथि के अनुसार क्रम में लगाएँगे
मतलब कि हम उत्तर के set को issuedate के अनुसार आरोही क्रम में क्रमबद्ध करेंगे
इसके लिए issuedate field के अंदर हम sort row में रिक्त cell पर click करेंगे और ascending पर click करते हैं
ठीक है हम अगली rowvisible पर जाएँगे
यहाँ हम fields की प्रत्यक्षता set कर सकते हैं हम इन्हें चेक या अनचेक करके चुनेंगे
ध्यान दीजिये कि default रूप से यह सारे checked होते हैं
अगला हम function row में जाएँगे
और हम criterion row पर जाएँगे
यहीं पर हम मापदंड के सरल और जटिल set को परिणाम के लिए limit कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम केवल उन पुस्तकों के लिए query कर सकते हैं जोकि सदस्यों ने जारी की थी किन्तु वापस नहीं की
मतलब केवल वह जो checked नहीं हैं
अतः इस row में checkedin field के अंदर खाली cell पर click करते हैं
ठीक है अब इस query को रन करते हैं
हम keyboard shortcut f5 इस्तेमाल कर सकते हैं या window के उपर edit menu पर click करते हैं और नीचे run query पर click करते हैं
क्या window के upper भाग में आप कुछ data देख सकते हैं
यह आपकी query के उत्तर हैं
ध्यान दीजिये कि हम सदस्यों की जारी की गयी पुस्तकों का विवरण date रहे हैं और issue date से क्रम में लगायी गयी हैं
अब हम नीचे query डिज़ाइन क्षेत्र में जा सकते हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे बदल सकते हैं
उदाहरणस्वरुप चलिए checked इन मापदंड हटा देते हैं
अब f5 दबाकर query को फिर से now करते हैं
इस बार हम query से मिलने वाली data की लम्बी सूची देखेंगे
अगला control s दबाकर इस query को सेव करते हैं यह एक छोटी पॉपअप window खोलेगा
अपनी query को हम यहाँ एक विवरणात्मक name देते हैं
चलिए type करते हैं हैं history of books issued to members
और फिर ok button पर click करिये और इस window को बंद करिये
हम इस सेव की गयी query को मुख्य base window में query के name पर double क्लिक करके खोल सकते हैं
तो यहाँ हमने डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक एक query बना ली
यहाँ एक नियत कार्य है:
सदस्य nisha sharma को जारी कि गयी पुस्त्कों की एक सूची बनाइए
इसी के साथ हम libreoffice base पर डिज़ाइन view में queries बनाने के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे:
डिजाइन view का इस्तेमाल करके एक query बनाएँ
aliases set करें